इस फोटो में एक किला दिखाई जा रही है जिसके आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाए जा रहे हैं।

इस फोटो में सामने की तरफ एक राम दरबार दिखाया जा रहा है उसमें एक शटर दिखाई जा रही है शटर का कलर ब्लैक कलर का दिखाया जा रहा है उसी की तरफ राम जानकी मंदिर दिखाया जा रहा है आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाए जा रहे हैं।

इस फोटो में एक ग्रीन कलर का पेड़ दिखाई दे रहा है जो आस पास से बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है सामने की तरफ एक लड़का दिखाई दे रहा है जो आता हुआ दिखाई दे रहा है एक छोटी सी गाड़ी दिखाई दे रही है जिसका कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।